ये एक बैंक है जिस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ोदा जिसमें एक वर्कर काम कर रहा है और एक लैपटॉप से काम कर रहा है अ ला और लाल कलर का इसमें वो हैं।

यहां पास बाइके हैं और एक घर है जहां ऐ_सी लगी हुई है और बाहर पेड़ है शाम का वक्त है।

सेव ता वायरिंग की जा रही है और सामने की तरह भी बहोत से पेज पड़े हुए है और यहां नीचे लकड़ी की--

एक व्हाइट सा घर है जिसमें से तीन चार रूम है सामने गार्डन है गार्डन --

ये एक फैक्ट्री है जहां पास तीन से चार गेट बन के रखे हुए हैं और ऊपर टीना लगे हुए हैं और लोहे के--

और अभी ये बना नहीं है ऊपर की साइ सीलिंग व्हाइट कलर की है और ऊपर --

ये एक शादी की जगह है जहां पास से रोज शादी होती है और बाहर साइड टेंट लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट है एक पेट्रोल पंप के सामने की बात--

कांच का फ्रेम लगा हुआ जिसमें बड़ा सा आइकॉन है और अंदर केसरी कार है बाहर--

अंदर भी बहोत से लोग हैं वर्कर काम यहां करते हैं और बगल में एजेंसी --

एक ये वर्कर लगा हुआ ईंटों के ऊपर पानी डाल--

ये एक पार्क का सीन है जहां पर आजू-बाजू बहोत सी लंबे-लंबे पेड़ लगी है आजू-बाजू गार्डन है और ये सामने एक इंसान खड़ा हुआ है बीच में --

ये एक दुकान है शॉप है जहां पास आर_ओ बिकते हैं और--

पाइप लगे हुएं हैं और ये दोपहर का समय हैं नीचे साइड कार खड़ी करने के लिए बाइक खड़ी के लिए एरिया बना--

ये एक पार्क का सीन है जहां पर बहोत से पब्लिक झूला झूल रही है और ये बड़े-बड़े झूले हैं।

इसमें अलग अलग रंग के अलग अलग ल ल लोग हैं और ये दोपहर का टाइम है।

यहां एक बिल्डिंग है जिस पे बहुत से फ्लोर लगे हुए हैं नीचे फूलों के गार्डन बना हुआ है और नीचे ट्रक खड़ा हुआ है पीछे।

ये एक घर है जहां पास एक सोफा रखा हुआ है।

और यहां पास बहोत से फूल लगे हुए हैं लाइटिंग लगी हुई है।

एक हॉस्पिटल है और आजू बाजू व्हेन लगी हुई है और ये एम्बुलेंस हैं।